उम्म टेबिल भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे पीछे --

यहाँ पर मुझे वो नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे --

यहाँ पर मुझे बहुत सारे बलूनस लगे दिखाई दे रहै है यहाँ पे मुझे घड़ी भी लगी दिखाई --

दे रही है और यहाँ पर मुझे एक--

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और यहाँ पर मुझे बदल भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ भी दिखाई दे रहै है और यहाँ पर मुझे चीटियां भी --

होटल में रेलिंग भी लगी दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे खम्बा भी लगा दिखाई --

दे रहा है और पेड़ भी लगे हुए दिखाई --

बहोत सारे कलर के कप रखे दिखाई दे रहे है और यहाँ पर--

दे रही है और कुछ रिक्शा भी खड़े दिखाई दे रहे है और यहाँ पर मुझे दुकान भी लगी दिखाई --

दाल चावल रखे दिखाई दे रहै है और यहाँ पर मुझे जग भी रखा दिखाई--

लाइट भी लगी दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे ऐसी भी लगा हुआ --

उसका कांच वाला दरवाजा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे--

यहाँ पर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है।